इस इमेज में मुझे एक एयरोप्लेन दिखाई दे रहा है जो टेकऑफ के लिए तैयार है।

थोड़ा सा ब्लैक एण्ड व्हाइट होने की वजह से मगर जो पिक्चर है काफी अच्छी है। काफी शांति दे रही है। बहोत अच्छा है।

इस ईमेज में मुझे एक हॉल नज़र आ रहा है जिसमें एक आदमी बैठके फाइल में अपनी कुछ काम कर रहा है और दो पीछे बहुत दूर बैठे हुए हैं।

इस इमेज में मुझे एक फिश मार्केट नजर आ रही है जहाॅं पे एक लेडी ब्लू कलर की साड़ी पहने हुए मछलिओं को बेक रही है औ --

इस इमेज में मुझे एक कारखाना नज़र आ रहा है जो कुछ एलुमिनियम का कुछ अ-अ-अ सिल्वर का कुछ मोल्ड करके कुछ बनाते हैं ।

बगीचे में शायद् से पत्तियाँ तोड़ रहे हैं या उनकी सफाई कर रहे हैं और काफ़ी मतलब लग रहा है कि हाँ बाग़वानी का इन दोनों को शौक होगा।

इस इमेज में मुझे एक सिल्क शॉप नजर आ रही है गारमेंट शॉप है ये जिसका नाम है द चेन्नई सिल्क ।

इस इमेज में मुझे किसी शॉप की अअ फ्रंट साइड की या किसी भी शोकेस की फोटो दिख रही है ।

तीन आदमी इस फोटो मे दिख रहे है दो दूर खड़े सफेद कपड़ों मे है ।

इस इमेज में मुझे एक जिम की इमेज नजर आ रही है जिसमें अ रनिंग जो होता है जिसपे रनिंग करते हैं लोग जॉगिंग करते हैं वो वाली मशीन --

ये मुझे एक गार्डन की फोटो लग रही है जिसमे गेंदे के फूल भी उगे हुए है। गेंदे भी कई मल्टी कलर में गेंदा उगा हुआ है येलो है ऑरेंज है रेड है।

जो कही जाने के लिए अपने आप को खीच रहा है। कछुआ धीरे चलता है वैसे आम तौर पर और ये भी काफी बूढ़ा कछुवा। मुझे लग रहा है धूप में ये कही जा रहा है।

क सुरक्षा कर्मी भी हैं लोगों की भीड़ भी है जो उनको फूल भी चढ़ा रहे हैं।

इस इमेज में मुझे खाई हुई चार प्लेटें नजर आ रही हैं जिसमें बिरयानी होगी और सारी बिरयानी चट्ट करके बैठे हुए हैं और टिश्यू पेपर भी पड़ा हुआ है।